इस फोटो में हम यह देख रहे हैं की एक मेहफिल सजा हुआ है और उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है ।

और उसके पीछे मे भी और आदमी सब खड़े हुए है।

इस फोटो मे हम यह देख रहे है की यह एक मेला है जिसमे झूला लगा हुआ है और बच्चे लोग झूल रहे है।

और वो दोनों आदमी प्लेट में कुछ खा रहे हैं एंड चाय पी रहे हैं और उसके सामने एक बोतल पानी का भरा हुआ रखा हुआ है।

इस फोटो मे हम यह देख रहे है कि यह एक स्कूल है जिसमे सारे बच्चे ब्रेंच पर अपना-अपना कुछ प्रोजेक्ट दिखा रहे है।

इस फोटो मे हम यह देख रहे है की चार लड़की स्कूल का एक प्रोजेक्ट तैयार कीये हुए है और किसी को दिखा रहे है।

और उस आयोजन मे ऊपर मे दो झण्डा लगा हुआ है और किसी के हाथ मे त्रिशूल किसी मे भाला किसी मे मुंडी ये सब सभी लड़की लेकर खड़ा है।

जिसमे से दो आदमी अपने हाथ मे कोदाली ले कर मिट्टी को खुन रहे है।